पीछे में एक लाल कलर की बिल्डिंग है और उसके एक गेट के सामने ठेला लगा हुआ है।

उसके बाहर साइड मे बहोत सारी गाड़ियाँ पार्क है।

जो कि उसके जो बिल्डिंग की जो है दीवाल सामने कि वो पूरी शीशे से बनाई गई है।

उसके आगे कुछ आदमी और कुछ औरतें बैठी हुई हैं।

उसके ऊपर में कुछ एक औरतें एक्सरसाइज कर रही हैं।